यह देखिए यह क्रांति योगा है और देखिए यहाँ पे सब दुपट्टे से फ्लैग झंडे की बनी हुई है जो --